मोबाईल ब्रांड के जो ऐड्वर्टाइज़ के जो बैनर लगे हुए नजर आ रही है वही पे हमे जो है काफी प्रकार के हमे जो मोबाईल नजर आ रहे है वहां पे हमे जो है एक उनकी कुर्सी नजर आ रही है जी काले कलर की है और ये शोरूम दिखने मे काफी अच्छी और सुंदर नजर आ रही है।

ये चित्र मे हम देख पा रहे है की यहां जो है भैस हैवो नजर आ रही है उन्होंने जो है उनका कलर जो है काले कलर का है उन्होंने जो है सफेद और लाल कलर की जो है रस्सी उनके गले मे बाँधी नजर आ रही है।

ये चित्र मे हम देख पा रहे हैकी वहां पे जो है हमे एक काफी बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है जिसका कन्स्ट्रक्शन वर्क चालू है सामने जो हैहमे वहा पे जो है लकड़ियों से बना हुआ काफी बड़ा जो है हमे नजर आ रहा है वही पे हमे उसके सामने के गाड़ी नजर आ रही है।